यहां पर बढ़िया टाइलों से बढ़िया स्टॉल बेडरूम सा बना हुआ है काफी खूबसूरत लग रहा है अलग अलग डिजाइन से बनाए गए है।

और यहां पे बहुत ही अच्छी सी टाइलें लगाई गई है रूम के अंदर और ऊपर भी वाइट कलर की टाइल लगी हुई है और पंखा भी लगा हुआ है लाइटें भी लगी हुई है।

और यहां पे अलग डिजाइन टाइप से बना हुआ है ये काफी खूबसूरत लग रहा है यहां पर।

रेलवे स्टेशन है जिसपे ट्रेन के पटरी नजर आ रही है और यहां पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ नजर आ रहा --

लाइटें वगैरा और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है और यहां पे मुझे व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे है यहां पे टाइल वगैरा भी लगी हुई है।

यहां दो दुकाने भी है और यहां पर समान भी मिलता है और यहां पर टेडी डे का समान और भी मिलता है।

एक मेज पड़ी है जिसपे बाल्टी पड़ी है और भी सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है गलेंडर मशीन पड़ी हुई नजर आ रही है।

छोटे छोटे चोरस वाइ डिजाइन के कपस पड़े हुए नजर आ रहे हैं बोहोत सारे लोहे के --

यहां पर एक बस नजर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति चढ़ रहा है नजर आ रहा है एक लड़का उधर देख रहा है दो तीन लड़के पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर कोई प्रोग्राम है जहां पे स्टेज वगैरा लगी हुईं नजर आ रही हैं और यहां पे डेकोरेशन भी काफी शानदार लगा हुआ नज़र आ रहा है।

नाम तो सही से पोस्टर पे दिखाई नहीं दे रहा आपका हार्दिक स्वागत करता है आरती में आपका स्वागत के देखो यहां पे मंदिर है।

मेगा हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है बहोत सारी बाइके भी खड़ी हुई नजर आ रही है एक गाड़ी भी खड़ी हुई है स्कॉर्पियो ।